रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी रिक्शायें खड़ी है।

वो फिटिंग के अंदर बहुत सारे सूट भी रखेया--

इस मीनार के आस पास बहुत सारी दुकान है जिनपे रेड कलर के बैनर लगे हुए हैं।

जो कार को धो रहे हैं।

ऑरेंद कलर का पर्दा लगा है।

और यहां पर कुछ फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हैं।